यह एक कार्यालय का द्रश्य है कार्यालय के बाहर एक बहुत बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है जिसमें केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान लिखा हुआ है।

यह एक ऑडिटोरियम दिखाई दे रहा है। जहां पे कुछ लोग बैठे हुए हैं लोग अपने कल का अभ्यास कर रहे हैं। ऑडिटोरियम में बहुत सारी लाइट जल रहि है।

यह एक बाइक का शोरूम दिखाई दे रहा है। जिसकी दिवाले कंचों से बनाई गई है अंदर बहुत ही अच्छे पर्दे और फूलों से सजाया गया है।

बहुत ही हरा पहाड़ के ऊपर कुछ सूखे हुए झाड़ी दिखाई दे रहे है |

एक व्यक्ति ने भूरे रंग का शर्ट पहना हुआ है एक दीवाल दिखाई दे रहा हैऔर एक सामने पोस्टर दिखाई दे रहा है जिसमें एक लड़की का चित्र बना हुआ है।

यह एक पर्वत का दृश्य है जो कि काले रंग का दिखाई दे रहा है पर्वत के ऊपर से जल गिरता हुआ नीचे आ रहा है।

बोर्ड लगा हुआ है जिस पत्थरो से लिखा गया है यूनिवर्सिटी का नाम बगल में एक बिजली का खंबा दिखाई दे रहा है यूनिवर्सिटी के सामने थोड़ा सा पानी गिरा हुआ है।

यहाँ पे एक जवान का प्रतिमा बना हुआ है जो कि काले रंग का है। जवान के हाथ में एक बंदूक भी दी गई है उसने एक टोपी भी पहना हुआ है।

इसे एक ईस्टील के दीवालो से घेरा गया है सामने एक सींडी दिखाई दे रहा है और एक आदमी भी दिखाई दे रहा जिसका सिर्फ सर दिख रहा है।

पानी का बहाव चल रहा है जो कि ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है पत्थर के चारों तरफ हरे कलर का कजली जमा हुआ है।